दो आदमी साइड में खड़ा हुआ दुकान के सामने।

और गेट के सामने साइन बोर्ड में सिवुंडी विंड्स लिखा हुआ है।

यहां पे हम लोग को एक होटल की फोटो दिखाई दे रहा है।

चर्च का कलर व्हाइट से दिखाई दे रहा है।

नीचे एक छोटा सा साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है।

उसके आगे ही एक बड़ा सा नदी है।

और गेट का आगे एक रस्ता है जिसमें शायद पत्थर से लगाया हुआ है छोटा छोटा।

और बाकी लोग जदातार लोकल ड्रेस में है।

और इसका फ्लोर टाइल्स से बनाया हुआ है।

यहां पे हम लोग को एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां पे हम लोग को एक ब्रिज दिखाई दे रहा है और उसके आगे एक कच्चा रोड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे एक टेंट दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।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

और राइट साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा --

ऊपर के तरफ में हम लोग को एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

और साइड में क्यू_आर कोड तीन क्यू_आर कोड रखा हुआ है।

ये घर का सामने में एक डिक्स भी है।

इसमें दो पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं एक लड़का और एक लड़की का पोस्टर है।

पीछे में हम लोगो को एक बरा बरा पार्क दिखाई दे रहा है।

यहां में एक टीना का घर दिखाई दे रहा है जो की टेंपल है शायद और ये टेंपल का दोनों साइड में --